इ रिक्शा है इ रिक्शा पे बैलून लगा हुआ है रेड कलर का।

सामने हाउस है जिस पे केराला होटल लिखा है।

पीछे ब्लू कलर की शीट है।

सोलापुर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है साइड में --

पैट्रोल पंप है पैट्रोल पंप पे येलो --

सामने खंभा है खंभे पे एक पर्चा लगा हुआ है।

ग्रीन कलर से पंपलेट छपा हुआ है।